योगा करते हुए दिखाई दे रही है ये एक काफी बड़ा हॉल है।

एक पैर ऊपर करा हुआ है और--

दो हाथ भी ऊपर करे हुए अ एक्सरसाइज कर रही हैं पीछे की तरफ--

और पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बीच में लकड़ी के पार्टीशन बने हुए हैं और एक के बाद एक--

दिख रही है एक पर्पल और ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है।

और कुछ गाड़ियां बाहर की तरफ खड़ी हुई हैं।

कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुछ टेबल और कुर्सियां लगी हुई हैं।

एक पेड़ की पत्तियां भी ऊपर की तरफ दिख रही है।

और यह फार्म काफी बड़ा और दूर- दूर तक नजर आ रहा है।

नीचे की तरफ कांच के दरवाजा भी--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

और एक शौचालय घर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे बैग और पानी की बॉटले भी रखी हुई दिख रही हैं।

काफी बड़ा मैदान जैसा दिख रहा है और पास में कुछ बड़े-बड़े--

और दो आदमी खड़े होकर कुछ काम कर रहे हैं नीचे की तरफ--

और नीचे एक बैंक है जिसका नाम डी_सी_बी बैंक है और ये दोनों चीजें ही हैं नीचे बैंक और ऊपर एक लाइब्रेरी --

अ के पोस्टर लगे हुए हैं बाहर--

बहुत बड़ा पेड़ बना हुआ है लगा है और पास में एक और पेड़ लगा हुआ है।

पिंक और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है।

औरत ने ब्लू कलर की यूनिफार्म --

ऐक्टिवा खड़ी हुई है और ये फोटो रोड पे से लिया हुआ है।

बना हुआ है और पीछे की तरफ काफी सारा--

और आसपास कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक आई_सी_आई_सी बैंक दिखाई दे रही है जो कि काफी बड़ी है।

बाहर कुछ टू व्हीलर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

की जगह दिखाई दे रही है जो कि काफी सजी हुई है।